और वहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए है और बाईकें भी खड़ी हुई है।

तालाब है और इसके चारों ओर रैलिंग लगी हुई है और इसके चारों ओर मैदान भी है काफी खेलने उलने के और घूमने का और यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हुए है ।